ये एक खेल का मैदान है जिसमें बहोत सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं।

यहां पे चंदन वगैरह भी मिलती है।

सामने बेसिंग भी दिखाई दे रही है तीन चार पंखे लट--